जे इसमें दो दरवाज़े है और दो छोटे दरवाज़े है।

राउंड शेप

ये पानी कल-कल कर बहती है।

यहाँ पे खम्बा लगा हुआ है इसमें बहुत सारा तार है। ---

ऊपर में खुला आसमान--

डार्क पिले रंग के यहाँ पे एक लोहे की--

यहाँ पे शीशे की खी--

एक व्यक्ति वाइट का टी-शर्ट तथा ब्लू का जीन्स पहनकर बेग लेकर --